सामने की तरफ सीढ़ियां दिखाई दे रही है बाहर गिट्टी डली हुई है एक चैनल गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा।

बहुत बड़ी नदी जैसी दिखाई दे रही है नदी के किनारे पर कुछ कचरा पड़ा हुआ है नदी के किनारे पर एक नाव भी है।

घरों में बोहत सारी खिड़िकयाँ बानी हुई है दो कार भी रखी हुई दिखाई दे रही है और दो मोटर साइकिल भी ल रखी हुई है।